कक्षाए के किताब मिलते हैं। इस दुकान से सारे स्टूडेंट अपने-अपने किताब लेते हैं।

इस दुकान को काफी फूल माला सजाया गया है यह दुकान बहुत ही बड़े है इस दुकान मे काफी कपड़ा मिलते हैं।

फ़ोटो भी लगे हुए है बस मे वाहन सीट है वाहन यात्री सीट पर बैठ सकते है।

इ बहुत सारी गाड़ी खड़ी है। माल गाड़ी सवारी गाड़ी सभी इस बाजार मे खड़े है।

यह सड़क है। यह सड़क काफी चौड़ी है। यहाँ बस चल रहे हैं।